कार के पास एक व्यक्ति दिख रहा है।

यह एक कमरा है जिसमें एक बेड दिखाई दे रहा है।

और सामने एक टेबल रखी हुई है।

जिसमें एक खिड़की दिखाई दे रही है।

और सामने एक घर दिखाई दे रहा है।

सामने एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है।

और सामने एक घंटी दिखाई दे रही है।

और सामने दो ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है।

यह एक खिलौनो की दुकान है।

और पास में एक खंभा खड़ा हुआ है।

इसमें सामने दीवार पर एक पोस्टर लग रहा है।

और दीवार पर कुछ गुब्बारे भी दिखाइए दे रहे हैं।

और सामने नीचे एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और पास में एक व्यक्ति का सिर दिखाई दे रहा है।

और आस पास हरे पेड़ पौधे हैं।

और सामने कुछ खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रात का चित्र है।

और कुछ लाइटें भी दिख रही है।

और दो पंखे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर से एक झरना बह रहा है।

आसपास बहोत सारे हरे पेड़ पौधे हैं।